यहाँ एक पार्क दिख रहा है कलर का पीछे के साइड मे स्विमिंग पूल बना हुआ है बगल के साइड मे भी स्विमिंग पूल है।

कुछ इस्टैंड लगी हुई है ब्लू अँड व्हाइट कलर की व्हाइट अँड येल्लो कलर की--

यह रोड है रोड पर कुछ री रिक्षे जा रहे है कुछ बाइके भी जा रहे है।

बगल मे बिल्डिंग दिख रही है ऊपर से ग्रीन कलर की चद्दर लगी हुई है।